बंद हैं सामने पे दीवार मे लाइट जली हुई हैं।

और बहुत सारे पेशेंट लोग अंदर की ओर जा रहे हैं उनमें से कुछ बाहर भी हैं।

यहां पे बहुत सारे बच्चियां जमीन पर बैठे हुए कुछ किताबें ले के पढ़ रही हैं।

यह दृश्य एक डेकोरेशन मैरिज होटल का है जिसको बहुत ही लाइटों के द्वारा सजाया गया है।

लाइट्स लगाए गए है चीयर पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए है।

और नीचे मार्बल का बनाया गया है।

एक व्यक्ति पीले कलर का शर्ट और ब्लैक शूज एंड एक ज जींस पहन करके आगे की ओर देखते हुए जा रहा है।

यह दृश्य एक नदी के किनारे की हैं यहां पे कुछ लाशें जल रही हैं।

एक बाइक है बस के जस्ट पीछे बड़े बड़े पेड़ भी है।

यह एक मंदिर के घाट का दृश्य है।

यह दृश्य एक ऑफिस का है।

यह दृश्य एक मछली फार्मिम की है जिसको करकेट और रेडिक्स से बनाया गया है।

कुछ बोट पे बैठ के आगे की ओर पानी में जा रहे हैं।

कुछ महिलाएं आगे की ओर जा रही हैं और कुछ खड़े हुए देख रहें--

यह दृश्य एक होटल की है।

यहां पर बहुत सारे रूम हैं जो कि खुले हुए हैं।

बहुत सारे लड़कियों का गहना मिलता है जिसपे एक महिलाएं बैठी हुई हैं जिसके फेस बल्ड हैं और मोबाइल चला रही है ।

दो तीन लाइट्स लगाए गए हैं।

बहुत सारे व्यक्ति आए हुए हैं और बहुत से बड़ा सा आज भी जला हुआ है।

इसे एक शीशे के अंदर बंद करके रखा गया है।

जिसमें से कुछ ने ड्रेस पहन रखा है कुछ ने विदआउट ड्रेस भी आए हुए हैं।

यह दृश्य एक दुकान की हैं।